यहाँ पे एक जेंट्स दिख रहे हैं।

और एक विंडो भी दिख रहा है। बैंक पुराना दिख रहा है बहोत काफी पुराना। पेंटिंग भी पुराना हो चुका है।

यहाँ पे एक लोहा के गेट्स लगी हुई है।